और मेज पे एक बोतल भी रखी है।

और एक मेज पे दो मशीन रखी है।

यहां पे बहोत सारे बच्चे बैठे हैं।

यह एक जिम है जिसमें बहोत सारी मशीन रखी है।

और इसके पास में मशीनें पे कुछ बांट्स जैसे लग रहे हैं।

और शोरूम के ऊपर दो ग्रिल लगे है।

और ऊपर एक पंखा लगा है और--

यह एक मिठाई की दुकान है।

यह एक कॉलेज है जिसमें बहुत सारी कुर्सियां रखी हैं।

और उनपे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।

और उनके सामी एक टीचर भी खड़ा है जो इनको पढ़ा रहा है।

पे कुछ हिरण भी खड़े हैं।

यहां पे कुछ बोहोत सारी कुर्सियां भी रखी हैं।

और उसके नीचे कुछ बोर्ड भी लगे है।

इसमें कुछ डब्बे रखे हैं जिनके अंदर कुछ बोतल है पानी की।

और यहां पे एक जिन्ना भी चढ़ा है।